इस फोटो में दो इ-रिक्शा है जिनमें से एक का रंग है काला और एक का रंग है। स्काई ब्लू ।

ए एंटर करने के लिए एक दरवाजा है। वो बहोत लम्बा है ओर अंदर बहोत सारा परदा है और दो मिरर भी है। बस के सामने --